और व्हाइट में उसके बीचों बीच में सादा सादा कुछ रस्सी टाइप के लगाए गए हैं दुकान है दुकान पर गेंदे फूल के माले से सजाए गया है बहुत सारे-